इस इमेज मे बोहोत सारी लेडीज है खड़ी दिखाई दे रही है जिनके सर पर अ ब ऑरेंज कलर से बड़े-बड़े टीके लगे दिखाई दे रहे है।

इस इमेज मे एक लड़का फोटो खिचवाता हुआ नजर आ रहा है जो की व्हाइट कलर की शर्ट एंड ब्लू जीन्स पहन रखा है।

ये इमेज एक जिम की नजर आ रही है एक व्यक्ति मिरर में फोटो क्लिक करता नजर आ रहा है।

रोड के ऊपर बहुत सारे लोग चल रहें हैं रोड के साइड में एक अंकल चल रहें हैं जो वाइट कलर की शर्ट पहने हुऐ हैं।